सामने में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं ऊपर आसमान पुरा काला है साइड में एक है येलो कलर का लाइट जल रहा है बहुत सारे फूल टंग रहे हैं।

-- सामने में एक ब बड़ा-सा रोड है जिसमे एक आदमी चल के जा रहा है जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस व्हाइट कलर का टोपी और हाथ में काले रंग का पंख- छतरी पकड़ी है साइड में एक बाइक खड़ा हुआ है काले रंग का इस साइड में एक स्कूटी है काले रंग का।

बस रोड दिख रहा है जो काले लंग रंग का है ऊपर ब्रिज का रंग काला और ग्रीन है ऊपर आसमान व्हाइट है ऊपर ब्रिज में लंबे-लंबी से लाइन की खूटी लगी है जिनमें बड़े-बड़े लाइट है।

मोहाल पुरा काला है बहुत बड़े-बड़े से बिल्डिंग दिख रहे हैं जिनकी छोटी-छोटी सी काले रंग की खिड़कियाँ दिख रही है और कुछ वाइट कलर के लाइट दिख रहे है।

लंबी सी एक गली दिख रही है जिसमें नीचे का रोड हल्का-हल्का ग्रीन कलर का एक आदमी ठेला लेकर के आ रहा है।

एक बहुत बड़ा सा ग्रीन कलर का घास का एरिया है जिसमे चार ऑटो खड़े है एक रेड कलर का है एक ब्लू कलर का एक येलो कलर का।